हरि हरियालीदार है इसका कलर है ग्रीन कलर है पीछे कुछ दीवार बनी हुई है ईंटों की।

यहां पर एक ऊपर चार्ट चिपकाया हुआ है और अंदर एक दीवार लगे हुए हैं।

सामान घर पर पहुंचाने की सुविधा लिखा हुआ है नीचे दरवाजे बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है।

इस फोटो के अंदर दो मंदिर बने हुए है मंदिर के आगे कुछ लोग खडे है मंदिर मे मूर्तियां बनी हुई है।

इस फोटो में सामने एक कमरा है ऊपर पंखा लगा हुआ है बल्ब लगे हुए हैं सामने बहुत सारा सामान पड़ा है।

फर्नीचर लगे हुए है कुछ बहुत बड़े बड़े पैकेट पड़े हैं टी_वी पड़ी है ब्लैक कलर की बिजली वाले तार लगे हुए है पानी का कैंपर पड़ा है।

इस फोटो के अंदर सामने एक बहोत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है उसके अंदर बहोत सारे लोग बैठे हैं ऊपर और ऊपर लिखा हुआ है वेलकम ।

इस फोटो के अंदर एक पानी का कैंपर पड़ा है ऊपर एक स्टील की गिलास पड़ी है पीछे फ्रिज लगा हुआ है फ्रिज के अंदर बहोत सारी बॉटले पड़ी है।

बाहर चिप्स कुरकुरे के पैकेजिंग लटक रही है अंदर की साइड बहुत सारा सामान पड़ा है बेंच लगी हुई है बीच में।

ये मंदिर बहोत ही ऊंचा है यहां पर इधर साइड का भाग है वो ईंटों से बना हुआ है पीछे कुछ ब्लैक कलर का कमरा दिखाई दे रहा है यहां पर आसमानी कलर का --

यहां पर चार आदमी खड़े हैं जिन सभी के अलग अलग कपड़े पहने हुए है किसी के टी शर्ट है तो किसी के पैंट शर्ट पहनी हुई है।

इधर कुछ कांच से में पानी बतासे पड़े हैं सामने कुछ अलग अलग तरह की मिठाइयां पड़ी है नमकीन पड़ी है।

और पीछे बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है ये जो गोल सर्कल है उसके चारों ओर छोटी छोटी घास लगी हुई है।

और सामने हरे हरे कलर के पौधे लगे हुए छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े--

इस फोटो के अंदर ये एक रूम है यहां पर तरह-तरह के गुब्बारे लटक रहे हैं कुछ येलो कलर के हैं कुछ ब्लैक कलर के हैं।

बाहर सीढ़ियां बनी हुई है इधर से एक सड़क निकल रही है सड़क के ऊपर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी हैं।

इस फोटो के अंदर यहां सामने एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि चार पांच छे मंजिल ऊंची है इसके ऊपर सफेद कलर किया हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक आदमी की फोटो दिखाई दे रही है आदमी के शर्ट पहना हुआ है एक आदमी फोन पकड़ा हुआ है।

सामने एक आदमी खड़ा है जिसके ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और गले में येलो कलर का रुमाल डाला हुआ है।